और आपको यहाँ पर दो आदमी भगवान के पकड़े दिख रहे होंगे और यहाँ पर एक मोबाईल भी है।

और यहां पर आपको स्टेज भी दिख रहा होगा और काफी सारे लोग यहां पर खाना खा रहे हैं ।

यहां पर दूध भी मिलता है।

को यहां पर काफी सारी किताबें नजर आ रही होंगी और काफी सारी दफ्ती भी दिख रही होंगी।